एक फंगक्शन के कार्य का चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र मे बोहोत सारे लड़किया नृत्य करते दिखाई दे रही है सभी लड़कियों ने बोहोत सुंदर ड्रेस पहनी हुई हैं।

पीछे बोहोत सारे लोग और फूल भी लगे हुए हैं।

इस बगीचे मे हरे - भरे बोहोत बड़े - बड़े पेड़ और छोटे पेड़ भी लगे हुए है कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है इस बगीचे मे फूल भी लगे हुए है।

यह एक पैदानों की तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर मे बोहोत अलग - अलग तरह के कपड़ों के बने हुए पैदान दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में अलग - अलग रंग के पैदान है कोई पीला ह-लाल नीला आद रंग का पैदान है।

कॉलोनी के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है इस कॉलोनी के बड़े-बड़े बिल्डिंग के बड़े-बड़े ए बालकनी दिखाई दे रही है।

एक स्टोर के अंदर की तस्वीर दिखाई दे रही है इस स्टोर मे काफी सारा सामान रखा हुआ है कई रेट पे सामान रखा हुआ है कुछ बोरियों अअअअ प्लास्टिक की बोरियों पर आटा चावल की वो रखी बो-- बोरिया रखी हुई है।

--हा पर बड़ी - बड़ी लोहे की रोड़े लगी हुई है यहाँ आस - पास दूर - दूर घने - घने पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस बांस के नीचे मिट्टी पत्थर आद रखा हुआ है यह बांस ऊपर घर का सब सहारा देने का कार्य कर रहा है।

बड़े से लोहे की टावर की तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर पर बड़े - बड़े अं मोटी - मोटी तारे बिजली की तारे दिखाई दे रही है।

तस्वीर पर शर्मा ऑडियो लिखा हुआ है यह तस्वीर एक ट्रक के पीछे बड़े - बड़े स्पीकरो की तस्वीर दिखाई दे रही है इस--

ब्रिज की तस्वीर दिखाई दे रही है यह एक बड़ा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है जिसके आसपास कार्य चल रहा है बहुत सारे लोग म कार्य कर रहे है मिट्टी बालू आदि रखा हुआ है।

पर बेंच बने हुए हैं जिस पर तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बना हुआ हैं और उपर रेजिस्ट्रेशन लिखा हुआ हैं बहोत सुन्दर खली सा बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा हैं।

एक बकरी की तस्वीर दिखाई दे रही है इस चित्र पर एक बकरी जिसके सिंह नहीं है वह काले और सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

सो हमे स्विमिंग-पूल की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस स्विमिंग-पूल पर बोहोत सारे झूले लगे हुए है। ये एक वाटरपार्क की तरह लग रहा है। क्युकी दूर-दूर पर बड़े-बड़े झूले भी दिखाई दे रहे है ।